जिसपे दो आदमी बैठे हुए हैं आगे वाला आदमी ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए हैं।

इस इमेज में हमें दो लड़के खड़े दिखाई दे रहे जो एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए हैं।

सामने इसमें एक दीवार है जो ऑरेंज कलर की है साइड में और यहां सामने माइक भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं दो-ती--

उ और हमें आजू-बाजु अमम वाइट कलर के गमलें रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो पिंक कलर की शर्ट पहने हुए --

आ इस इमेज में हमे सामने एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे रेड कलर से लिखा हुआ है अमित स्पोर्ट अ --

और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है और उम्म यहाँ यलो कलर की दिख रहा है ये बिल्डिंग पेंट की हुई।